और चर्च पर उनका जो सिंबल दिखाई दे रहा है। क्रॉस का --

एक दिखाई दे रहा है। की दीवार --

यह एक पार्क है। पार्क के बाहर रिक्शा रुकी है। अ

लोड है जिसके नीले कलर का प्लास्टिक दिखाई दे रहा है।

और बाजू में एक फैक्ट्री दिखाई दे रही है।

एक आदमी बैठा हुआ है जो नीले रंग की पेंट पहना हुआ है। वह आदमी --

दो लेडीज हैं। एक जेंट्स है। एक जेंट्स और एक लेडीज --

दो बस खड़ी है एक लाल रंग की एक सफेद कलर की। लोग --

आ नर्स खड़ी हुई है जो उनको ऑब्सेर्वे कर रही है।

बड़ा सा गेट है। गेट बंद है।

और आसमान भी साफ़ तौर पर दिखाई दे रहा है।

बच्चों के खेलने की चीजें हैं। सी सॉ है।